जंगल में बहुत सी गाड़ियाॅं जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं यहाॅं पतझड़ का मौसम होगा काफी पत्ते जड़ के निचे गिरे हैं।

और इसमें काफी अच्छा महौल है।

और बाहर लोग चलते हुए दिखाई पड़ते हैं।

और उसमे ऊपर ग्रीन चौक बने हुए है सड़कों में ज़ेबरा क्रॉसिंग है।

कार की अगल बगल काफी लोगे मौजूद हैं और इसमें इंडियन ऑयल का--

और रेलिंग भी लगी हुई है।

विशाल चट्टान के बगल में एक पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

कैन दे लगा हुआ है इसमें एक रेफ्रिजीरेटर है रेफ्रिजीरेटर में काफी सारी कुक और कोल्ड ड्रिंक मौजूद है।

इसमें एक जे_बी_एल का कंपनी है जे_बी_एल के कई सारे स्पीकरें इसमें--

पीछे फ्लोर भी गया हुआ है।

अपना हेयर स्टाइल दिखा रहा है।

और साइड में रेलिंग भी लगी हुई है।

और नीचे टाइल्स भी लगे हुए हैं।

ऊपर कई सारी लाइटे लगी है।

ऊपर में कई सारे बोर्डे लगे है।

दुकान के बाहर खड़े हैं जो की सामान लेने आए हैं।

जो काफी खूबसूरत और साफ है।

इसमें एक हॉस्पिटल का नजारा दिखाई पड़ रहा है।